यहां एक लड़का खड़ा है जिसका टी शर्ट का कलर व्हाइट है और जींस का कलर ब्लू है।

जीसमें से बहुत सारी लाइट्स टंगी हुई है जिसका रंग सफेद है।

लड़के का टी_शर्ट का कलर ब्लू है और जींस का भी कलर ब्लू है।

यहां सामने एक बाल्टी रखी हुई है जिसका कलर व्हाइट और ग्रीन में है।

यह एक कमरे के अंदर का दृश्य है।

यहां नीचे ग्रीन कलर की चटाई बिछी हुई है।

यहां सूर्य की रोशनी आ रही है जिसका रंग पीला है।

यहां बहुत सारे बैग रखे हुए हैं।

यहां बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियों का कलर ब्लैक है।

यहाँ कुछ टेबल्स रखे हुए हैं टेबल्स का कलर सफेद है।

यह एक मार्केट का दृश्य है।

यह एक राशन दुकान के अंदर का दृश्य है।

यहां लड़के टे के टी शर्ट का कलर ग्रीन हैं।

यहां एक कार खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

यहां की दीवारें पीले रंग की है ऊपर लाइट टंगे हुए हैं लाइट का कलर व्हाइट है।